डिवाइडर बनाई गई है नीचे साइड पर घास लगी हुई है और कुछ लोग बैठे हुए हैं चक्कर दी गई है जो लाल रंग की चक्करें हैं।

साइड पर एक बैंक है बगल में ए.टी.एम मशीन है एक आदमी बात कर रहा है एक गाड़ी रखी हुई है।

एक मंदिर है जो काफी बड़ा मंदिर है चबूतरे बनाये गए हैं गोलाकार की हुकूमत बनाई गई है। और एक औरत खड़ी है जो फुटबॉल को आज-- पहले छोटी बच्चे ढूंढने में क्या ड्रेस पहनी हुई है।

यह जो छोटी सीढ़ी है और तीन गाड़ी खड़ी हुई है एक स्कूटी दो बाइक है लाल रंग की बाइक है और काले रंग की गाड़ी खड़ी है दीवाल का रंग पिंक कलर का ।